यह एक सिंहासन की कुर्सी है इस कुर्सी के पास एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो हाथ में टूटा हुआ कुर्सी का हिस्सा ले रखा है।

और एक छोटा बच्चा जा रहा है।

बेड के बराबर में वाशिंग मशीन रखी है वाशिंग मशीन के ऊपर एक कपड़ा रखा हुआ है।

और उस इस सरोवर के पास कुछ कमरे बने हुए हैं जिसकी छत पर कुछ व्यक्ति टहल रहे हैं।